जहाँ तुम कोचिंग सेंटर जाते हो भैया भैया तुम जहां कोचिंग सेंटर जाते हो ये भैया भी कह रहे थे इनका भी एडमिशन करा देना भैया मैं भी पढ़ लूंगा मेरा भी करा देना मेरा भी एडमिशन हो जाएगा मैं ही पढ़ लूंगा कोचिंग सेंटर में भैया बढ़िया है नहीं सही पढ़ाते हैं।

ओए शाम में एक काम करेंगे बालूशाही खाने चलेंगे मिठाई विठाई अच्छी लगी थी मुझे बालूशाही वहाँ की जहां की खायी थी और वहाँ की जो है मोतीचूर के लड्डू भी खा कर देख लेंगे। पता चल जाएगा कैसा टेस्ट है।

हाँ भाई बता यार चलेगा तो शाम में चलेंगे यार घूमने बुद्ध टेम्पल में आराम से पार्क भी है थोड़े बहुत देर बैठ भी जायेंगे वहाँ पे देखेंगे यार बुद्ध भगवान् जी वैसे ही इतने पूजे जाते हैं हमारे यहाँ पे।

चलेंगे यार लौंड्री में कपड़े कपड़े दे देंगे यार कपड़े धुल जाएंगे बहुत दिन तो हो गए यार अरे लौंड्री यार खुली रहती है वो तो पूरे दिन रात पूरे किसी भी टाइम दिए आओ।

यार अपने वहाँ पे वो कित्ता बड़ा चर्च है यार क्रिस्चियन कॉलोनी में यार क्रिस्चियन सारे कित्ते सारे वहीँ आते होंगे एँ।

यार आज अपन ग्राउंड में गए थे क्रिकेट खेलने तो कितना सही लग रहा था यार खेलते समय मन कर रहा था बस खेले चले जाले चले जाओ मौसम कितना लेकिन एक बात है यार यहां पर काफी बड़ा ग्राउंड है ये वाला केवल एक ही गांधी मूर्ति पे --

यार अपने लोग उधर बैठे है मीनार पे यार कितनी पुरानी मीनार है यार देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे सन पचासी सन नब्बे की इतनी की हो।

ट्वेल्व के बाद भाई हाफ डे न हाफ डे आगए वहापे ये स्पोर्ट्स की दुखान है यार।

मन तो बिल्कुल करी ना रही है र एक तो टाइम टाइम में बहुत बज मिलती है।

का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं यार ये लोग ये गवर्नमेंट जो है ना --

यार तेरे को पता है यार अतुल के खेत पे यार एक झोपड़ी बनी हुई है यार वो घास घास को की झोपड़ी कितनी बढ़िया लगे यार है ना तुम्हें ऐसा लगे यार आजकल के जो घर है बक्के वो भी उनके सामने फेल है यार मतलब बड़ी बड़े लगे यार वो झोपड़ी एक बनाएंगे यार अपने अपने खेत पे।

तेरे को पता है यार पहले के लोग खेत पे अपने कमरा बना लेते थे। उन्हें उनसे बहुत फायदा हो जाता था मतलब जो उनके औज़ार होते थे खेत के फावड़ा वगेरा वहीँ रख आते थे। मतलब वहीँ आकर आराम से लेट जाया करते थे। लेकिन यार आज के टाइम में यार लोग वोगन को कुछ यार --

यार तुम्हे पता है यार पहले के जमाने में यार लोग कितनी-कितनी ऊंची सीढियों पे चढ़ते थे कितनी-कितनी ऊंची जीनों पे चढ़ते थे लकिन यार आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग अब सीढियों पर चढ़ते ही नहीं हैं।